खिड़की से बहोत ज्यादा रोशनी चमक्ती हुई देखाई दे रही है और वहाँ पर एक स्टैंड भी रखी हुए देखाई रे रही है।

और वहाँ पर हम्म पंखे लगे हुए दिखाई दे रहे है और कुर्सियां भी रखी हुई दिखाई दे रही है और वहाँ पर हम्म कुछ बल्ब भी लगी हुए दिखाई दे रहे है जिनकी रोशनी ज्यादा चमक रही है।

जो कि एक कुर्सी रखी हुई है जो कि वह कुर्सी सुंदर सजी हुई है और यहाँ पर एक कॅमेरा लगा हुआ दिखाई दे रहा है और वहाँ पर एक व्यक्ती भी खड़ा हुआ दिख रहा दे रहा है।